काफी सुन्दर भी है ।

चार हजार पे मार्किटस हैं देख सकते हैं | काफी अच्छा लग रहा है देखने मै और अगल बगल मै काफी सारे घर है | काफी सारे पेड़ पौधे काफी सारे चीजे आपलोग देख --

और कुछ छोटो टोटो और टम्पू पार हो रहे हैं और काफी सारे आदमी है देख सकते हैं |

और काफी बड़ा रोड भी है और रोड के पास एक काफी बड़ा खम्बा है ।

और उसमें शायद घड़ी है देख सकते हैं काफी बड़ा है।

सुंदर लग रहा है देख सकते हैं |

और मंदिर के अगल बगल में काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ है ।

दिख नहीं रहा है इतना क्लियर लकिन काफी बड़ा रास्ता भी है देख सकते है।

तो आप लोग देख सकते है घर के अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के अंदर दो --

कुछ अंत में बच्चे बाहर में है और एक काफी बड़ा बिल्डिंग भी हैऔर वही पे है स्विमिंग पूल है और काफी अच्छा है ।

काम अपना बा काफी सुन्दर हैं देख सकते है रंग-बिरंगे बल्लूंस है यहां पे।

आपको जो चाहिए आपको यहां पे मिल सकता है पानी के बोटल्स है ।

तो आपलोग देख सकते है यहां पे काफी सारे बत्तख है।

और एक ट्रक आ रही है एक कार देखिए पेट्रोल पंप से निकल रही है काफी ज्यादा भीड़ है पेट्रोल पंप पे।

काफ़ी लोग देख सकते है आगे एक काफी बड़ा तालाब है ।

तो आप लोग देख सकते है यहाँ पे काफी बड़ा एक रोड है।